चर्च है चर्च के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है नीचे लाइट लगी हुई है कांच का गेट है साइडों मे खिड़की है ऊपर भी खिड़की है साइडों मे पेड़ लगे हुए है नीचे जीने बने हुए है एक लोहे का डंडा सा बना हुआ है।

नीचे मे एक ऐसी लगा है ऊपर फैन लगा हुआ है एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है साइड मे व्हाइट कलर का स्टार लटके हुए है पीछे के तरफ एक स्टूल है साइड मे एक काउन्टर बने हुए है जिसमे सामान रखा है मोबाइल हुए है नीचे --

कंस्ट्रक्शन है उसके साइड मे लोहे का वो बना हुआ है विषय मे नीचे जमीन पे जे.सी.बी.यां खड़ी हुई हैं । वो लो --

साईडों में अ एक एक दुकान है उसमे फोटो फ्रेम से अ सीनरी ली हुई है। जगह-जगह एक चप्पल की दुकानें हैं चप्पल की दुकानों में जूतियां लटकी हुई है। साइड में एक स्टोर है औ लड़की औरते खड़ी हुई हैं। एक आदमी चल के जा रहा है। --

कम्युनिटी मेडिकल्स लिखा हुआ है | नीचे की तरफ लोग बैठे हुए हैं | एक औरत चलकर जा रही है | चार पांच पिलर्स साईड में है और आस पास हॉस्पिटल बना हुआ है | ऊपर लाइट लगी हुई है |

साइड में अ प पाइप है।‌‌‌ ऊपर एक दुकान टाइप बनी हुई | फूल लगे हुए हैं साइड नीचे की तरफ जमीन थोड़ी गंदी गंदी सी दिख रही है।